पीछे बहोत सारे लाइट्स लगी हुई है और कुछ सायकल्स रखी हुई है।

ये फोटो एक क्लीनिक की है इस क्लीनिक के रेक में बहुत सारी दवाइयों को रखा गया है।

इसके साइड ही में कॉफी मग रखे हुए हैं और साथ ही इसके साइड में कॉफी मशीन है।

इस गाड़ी का कलर येलो कलर का है इस गाड़ी के पीछे साइड न्यू यूनिवर्सल ब्लो हॉर्न लिखा हुआ है।

यह फोटो एक चर्च की है इस चर्च में बहुत सारे फादर्स बैठे हुए हैं और साथ ही इस फादर्स के पीछे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं।

ये फोटो एक क्लासरूम की है इस क्लासरूम में बहुत सारे डेस्क रखे हुए है।

इस क्लास रूम के वाल पे बहुत सारे बलूंस और स्टीकर लगाए हुए हैं और साथ ही इसकी सीलिंग पे लाइट लगी हुई है।

इसके साइड ही में बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है जिसका कलर येलो है इसके साइड साइड में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और इसकी जमीन पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं।

गाड़ी वाइट कलर की और एक ग्रीन और येलो कलर की है शायद ये उसके साइड में एक कार रखी हुई है जिसका कलर वाइट कलर का है।

का कलर ग्रे कलर का है और इसके ऊपर वाले रैक पे बहुत सारे पेड्स रखे गए हैं और दुकान का कलर येलो है।

जिनमें बहुत सारी बिस्किट पापड़ ये सब रखे हुए हैं इसके साइड में एक बच्चा है।

इस चर्च का कलर रेड और येलो है इसके साइड साइड में बहोत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए है।

ये फोटो एक गांव की है इस गांव में बहुत सारे लोग है।

उसके साइड में बहुत सारे घर हैं।

में पी के बाइक सर्विस एंड वाशिंग सेंटर लिखा हुआ है।